बस स्टैंड का लग रहा है।

बस भी लगी हुई है।

डांस क्लॉस का है ।

कलर का है।

इमरजेंसी हॉस्पिटल है।

लोगों की काफी भीड़--

और यह ग्रीन और क्रीम --

यह तस्वीर किसी योगा क्लास की है।

जहां पे बहुत सारे लोग--

एक टीचर है जो सबको--

जैसे हैंड पाउच कलर --

बहुत सारे टेबल भी हैं।

यह तस्वीर किसी गार्डन का है।

यह तस्वीर किसी लाइब्रेरी का है।

लाइट की भी सुविधा--

कचरे रखे हुए हैं।

किसी के घर का है।

फूलों की माला की--

एक पार्क नजर आ रहा है।

झुला भी --